तो सामने एक रोड गया हुआ है जो ब्लैक कलर का है | यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है ।

यहां पर बाजू में साइकल खड़ी हुई है

इसमें राम नाम की एक चुनरी जिनके ऊपर डली हुई है ।

यह देखने में दिन का सिन लग रहा है | रोड ब्लैक कलर का है ।

यह देखने में दिन का सिन लग रहा है |

और बिजली की खंबी भी दिखाई दे रहे हैं।

बड़े-बड़े कुछ मशीन रखी हुई हैं | एक लड़का मशीन उठा के ये दिखाई दे रहा है |

बाजू में एक जनरेटर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है | इ का है |